पीछे दीवार दिखाई दे रहा है खिड़की दिखाई दे रहा है राखी दिखाई दे रहा है जमीन दिखाई दे रहा है बच्चे हुए दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में बहुत बड़ा बिल्डिंग नजर आ रहा है जिस पे बहुत सारी खिड़कियां नजर आ रही है पेड़ नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में एक खुला हुआ गेट दिखाई दे रहा हैं गेट के अंदर कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।